यहाँ पे ब्लैक कलर मे बैठा हुआ एक सामने खड़ा है यहाँ कंप्यूटर के पास बैठा है शायद कोई मशीन-वशीन है वर्क चेक करने वाले लोग---

एक हूं चार बच्ची है जो ड्रॉइंग बना के दिखा रहे है लोगों को ---

ये कोई लड़की है जैसे तेल कोई चीज का तेल निकाल छना रहा है उधर से पेरा के। ये लड़का हाथ से उसको चेक कर रहा है की मोटा है की पतला लग रहा है ऐसा ही कुछ कहाँ का सीन है ये नहीं पता चल--